ये मेडिक्ल हॉल है जहाँ पर अपन को कुछ होता है।

भगवान जी के लिए भी सब कुछ होना चाहिए| अच्छी बात है यहाँ पे खाना पीना को सिस्टम और होना चाहिए था भगवान जी के लिए जब अच्छा लगता।

तो किसी रोड की इमेज लग रही है तो कूच लोग बाइक से जा रहे है कूच लोग ऑटो बी है अरे बा यार इमेज तलों बहोत अच्छी है सही मे बहोत अछि दिख रही है।